अगल-बगल ऑरेंज ऑरेंज पत्थर है सामने बहुत बड़ा पेड़ बना दिख रहा है।

यहाँ का स्पेशल चिकन करी है आ इसमें ये जो चटनी दी हुई है काफी टेस्टी लगती है खाने में आ एक बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग किया हुआ है।

यह पार्किंग है यहां पे गाड़ी पार्क होती है यहां पे फोर वीलर टू व्हीलर गाड़ियां खड़ी हुई है बगल मे बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है।